इस चित्र में बहुत सारे सफेद फूल है।

इस चित्र में कुछ लकड़ियों की चीज धरी हुई है।

और इन लड़कियों की चीज के पीछे एक और लकड़ी की कुछ चीज एक व्यक्ति बना रहा है।

और इस मैदान में छोटे छोटे बच्चे हैं।

इस चित्र में एक बारात घर है।

इस चित्र में एक दुकान है इस दुकान में बहुत सारे लैप लैपटॉप भी धरे हुए हैं।

और इनकर कुर्सियों के पीछे एक बेंच भी है।

और यहां पर बहुत सारे गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

और इस रूम में सोफे भी धरे हुए हैं।

और इस दुकान में बहुत सारी चीजें धरी हुई है।

और यहां पर बहुत सारे गुब्बारे भी अह उड़ रहे है।

इस चित्र में एक रेलवे स्टेशन है।

और यह व्यक्ति कुछ लेंटर घेरने का सामान बिछा रहे हैं।

और यहां पर बहुत सारी पट्टी भी बिछा दी है।

और इसके बाहर ग्रिल भी लगी हुई है।

और इसके बाहर शीशा भी लगा हुआ है।

और इस जिम में बहुत सारे गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में कोई हॉस्पिटल है।

और इस हॉस्पिटल में नीचे टाइल भी लगी हुई है।

और इस ऑफिस के अंदर एक बेंच है।

और इस रूम में बहुत सारे लाइटा भी लगी हुई है।